यह एक बाहर के पार्क में बहोत सारे झूले नजर आ रहे हैं।

वहां एक दीवाल पर वॉच लगा हुआ है फैन चलता हुआ नजर आ रहा है गोदरेज भी दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ के नीचे एक बाइक भी खड़ी है घर के वॉल पर एक बोर्ड टंगा हुआ है उसमें कुछ अक्षरे लिखी हुई है।

यह पुल बहुत पुराना नजर आ रहा है।

वहां पे एक ग्रीन कलर का पर्दा भी लगाया गया है यह कमरा अल्बेस्टस बना हुआ है।

दूर में एक बहुत बड़ा टावर नजर आ रहा है वहां एक स्ट्रीट लाइट बने हुए हैं।

यह बजाज का शोरूम है जिसमें गाड़ियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

बाहर मे रेलिंग बनाए गए हैं एक छाता भी दिखाई दे रहा है।

दो व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा है एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है दूसरा व्यक्ति नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है दोनों अपने हाथ में फोन चला रहे हैं दूर में केले का पेड़ भी दिखाया गया है।

रूम में कुर्सी है कुर्सी पर टावल दिखाया गया है।

ऊपर में बहुत सारे सोनल पैनल भी लगे हुए हैं।

उनके सामने बैठने के लिए कुछ प्लेसेस बनाए हुए हैं कुछ लोग बैठके बाते कर रहे हैं।

दुर में साइकिल कुर्सियां बाइक में दिखाई दे रही है यहां पर छोटे छोटे बहुत सारे दुकान भी नजर रहे हैं।

घर की दीवाले बहुत पुराने नजर आ रही है साइकिल एकदम चमकता हुआ नजर आ--

तार के ऊपर में बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे कर्क रेखा गुजरते हुए जाती है।

दीवाल पर मछलियों का बहोत सारा चित्र बना हुआ है।

अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर टेबल चेयर भी लगा हुआ--

एक भगत दिखाई दे रहा है।

डैस्क के ऊपर में बैग भी रखे हुए दिखाई दे रहे सबसे पीछे में फैन का स्विच लगा हुआ है।

यहां पर अलवेस्टर का ये कोना जैसा भी बना हुआ है।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

इस समान नजर आ रही हैं वहां का लाइट बहुत सुंदर और --

यहां पर कप का इमेज दिखाया गया है इस कप में बहुत तरह तरह का कप है।

कुछ कपों को हैंगर में लगाया गया है कुछ कपों को स्टैंड में रखा गया है।

यह एक कमरे का इमेज है जहां पर टेबल चेयर लगाए गए हैं पीछे में बॉक्स बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह किसी ऑफिस का शोरूम है जो बिल्कुल नया ओपनिंग किया गया यहां पर सफेद और वाइट कलर का बैलून लगाया गया है।

यह एक मेले का चित्र है जिसमें दो ऑटो लग हुए हैं।

बगल की दुकाने बंद नजर आ रही है उसके बाद की दुकान खुले हुए दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति बैग टांगा हुआ--

उत्तक जंगल के जैसे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

अन्दर में बहोत सारा टेबल चेयर दिखाया गया है।

सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई दे रहे--

कुछ लोग सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक इंस्टीट्यूट की छवि है यहां पर बहुत सारे काले कलर का टेबल चेयर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

सामने में व्हाइट ब्लैकबोर्ड नजर आ रहा है।

ऊपर एन_सी_सी की मीटिंग हो रही है।

और दो चार व्यक्ति बैग को टंगे हुए दिखाई दे रहे--